यहाँ एक मैदान है और यहां पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं।

यह एक नदी के पास तीन व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिसमें से दो व्यक्तियों ने सफेद शर्ट पहने हुए हैं।

पीछे की ओर ही एक बुफर भी रखा हुआ है।

जो की साड़ियां पहने हुए हैं साथ में ही पीछे की ओर एक नीला पर्दा भी लगा हुआ है।

और अंदर की ओर एक झंडा भी लगा हुआ है।

यहां ये घर के पास कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर कुछ व्यक्ति फोन चलाती हुई भी दिखाई दे रहे हैं इस घर पर सफेद कलर हो रखा है।

और यहां पर एक अलमीरा भी रखा हुआ है।

यह एक घर है और घर के पास एक ग्राउंड बना हुआ है।

और सामने की ओर एक स्कूटी भी खड़ी हुई है।

की हुई है। इनके बराबर में दो खिड़की लगी हुई हैं। इनके पास में दो ग्रिल लगी हुई हैं।

सामने ही एक डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है।

इसमें बच्चों का झूला लगा हुआ है यह पीले कलर का है और इसके नीचे एक डंडा लगा हुआ है नीले कलर का।